मंदिर के अंदर एक हरे रंग के वस्त्र में एक महिला की प्रतिमूर्ति नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक झोपड़ी के सामने एक व्यक्ति और एक महिला खड़ी हुई है।

इस दृश्य के अंदर एक कमरे में दो चेयर के ऊपर एक महिला --

सामने कुछ व्यक्ति एक लड़की को रक्तदान सिविल का प्रतिरूप देते हुए दिखाई दे रहे है।

द्रश्य के अंदर दो पीले रंग की इमारत नजर आ रही है।

इस दृश्य के अंदर पहाड़ी इलाका दिखाया गया है जिसमे कि पहाड़ो के बीचो-बीच से नदी तीव्र गति से बहती हुई दिख रही है।

यहाँ पर बच्चों के स्लाइड के लिए झूलें लगाए गए हैं जो की रंग-बिरंगे है।